लुंगी और शर्ट पहने हुए है एक ले एक जेन्ट्स है जिन्होंने बैग लटकाया हुआ काले --

ये एक काफी बाद हाल टाइप हे जिसमे सारी खुरसिया राखी हुई हे सामने एक काउन्टर हे जिसपे सायद टिकट बिक रही हे जे कोई ।